जो कि व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

वाटिका दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारा--

मेरे सामने एक नोकिया का शॉप दिखाई दे रही है।

दे रहे हैं यहां पर कुछ आदमी--

मेरे सामने क्लास रूम दिखाई दे रहा है क्लास रूम में बहोत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे--

यहां पर कुछ ग्रीन कलर की दिवार भी दिखाई दे रही है।

हॉल भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियां भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

हरी हरी घास भी दिखाइ दे रही है गार्डन में--

मेरे सामने एक रोड दिखाई दे रहा है।

छोटे हाथी का कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ बिजली का खंभे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां गाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पर--

ऑफिस की दीवार व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है ऑफिस में एक मेज भी रखी हुई दिखाई दे रही है मेज का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

रोड पर बिजली के खम्हे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक ट्रांसफर दिखाई दे रहा है।